ग्राउंड के चारों तरफ मकाने भी बनी हुई है मकान का कलर व्हाइट है।

बिल्डिंग के नीचे एक ग्राउंड भी है ग्राउंड में झंडू तोलन हो रहे हैं।

और नीचे में डेकोरेट किया गया है यहां पे बहुत सारे महिला पुरुष भी हैं।

बेड पर ब्लू रंग का चादर लगा हुआ है।

ग्राउंड में नीचे छोटे छोटे घास भी हैं।

बाउंड्री हैं वह लोहे का है और जाल टाइप का है।

नीचे में नीचे छोटे छोटे घास है और मिट्टी है।

यह एक बहोत ही बड़ा समुंद्र का दृश्य दिखाई दे रहा है।

समुद्र के आगे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं।

कमरे के दीवार पर एक फोटो भी लगा हुआ है उसे पर हार चढ़े हुए हैं।

यह एक बहुत ही बड़ा हॉल का दृश्य है इस हाल की दीवार पर भीमराव अंबेडकर की फोटो भी लगी हुई है।

अस्पताल के बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई है।

और वहां एक रोड भी गुजरी हुई है रोड पर कुछ कुछ पानी जमे हुए हैं।

एक मस्जिद के बिल्डिंग का दृश्य है।

सारे बच्चे पुरूष अपने सर में टोपी लगाए हुए हैं।

और बड़ी चट्टान भी है और मकान भी बने हुए हैं।

इस दुकान के अलमीरा में बहोत सारे वस्तुएं सजाकर रखें हुये है।

यहां एक बड़ा गेट है लोहे का वह ब्लू रंग का है।

मकान के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर चिपका हुआ है उसके ऊपर वर्मा फास्ट फूड एंड स्वीट्स लिखा हुआ है।

मकान के बगल में एक साइकल भी लगी हुई है।

यह एक कमरे का दृश्य कमरे की दीवार का कलर व्हाइट है इस कमरे की दीवार पर एक ट्यूब लाइट जल रही है।

छल में ऊपर करकट लगा हुआ है।

यह एक कमरे दृश्य है कमरे की दीवार पर व्हाइट कलर का पेंट किया गया है।

कमरे में एक काउंटर भी बना हुआ है।

काउंटर पर बहुत सारे फ्लावर पॉट छोटे छोटे रखे हुए हैं।

सीलिंग में बल्ब लगे हुए हैं दीवार पर बहोत सारे पोस्टर भी लगा हुआ है।

दीवार पर ब्राउन रंग का टाइल्स लगा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है दुकान के ऊपर में करकट लगा हुआ है।